इस तस्वीर मे एक व्यक्ति नजर हा रहे है के नजर हा रहे है बलून नजर हा रहे है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति चाय पिते नजर आ रहा हैं चाय के कप नजर आ रहे हैं लाइट्स नजर आ रहे हैं दरवाजा नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे नजर आ रहे हैं इसमें बड़े बड़े पेपर बेल कुर्सी टेबल नजर आ रहे हैं।

इसमें नजर आ रहा है। खिड़की से परछाई अंदर आ रही हैं। मार्क्स नजर आ रहा हैं। टाइल्स नजर आ रहा हैं।

पीछे आर्टिकल फूल नजर आ रहे है लाइट नजर आ रहा है कुर्सी नजर आ रहा है टेंट नजर आ रहा है पगड़ी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग अ बच्चे नजर आ रहे है एक टीचर नजर आ रही है महिला टीचर ।